यहां पर तो माशाल्लाह चिकाई जाती है।

ये देख रा सामने दो भैसें --

और ये आगे वाली भैंस के थोड़े सही है। पीछे वाली भैंस --

झिन्गें भी हैं। सारी मछली उपलब्ध है।

लगता है सर्जिन का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं।

यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है ।

प्राकर्तिक चीज़ है पत्थर की। देख रहे हो कैसे-कैसे कटिंग हो रखी है।

और इसके ग्राउंड में देखो कितने प्यारे-प्यारे पेड़ खड़े हैं।

ये कितनी बड़ी शॉप है ।

इधर दवाईयां और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं --

ये तो छोटा मिनी मोल है ।

यहाँ पर तो सभी मुस्लिम भाई हैं।

कुछ यहाँ पर खड़े होकर घूम रहे।

ये रही स्टेट बैंक का एटीएम ।

यहां पर तो अधिकतर ऑटोमेटिक मशींस है पूरे जिम में --

वो सामने गेट तो बड़ा ही प्यारा लगा रा --

स्टेट बैंक में भी भीड़ लगी रहती है।

और ये लेडीज जेंट्स दोनों हैं भाई ।

जो पेट्रोल पंप पर सप्लाई किया जाता है।

और यहां पर तो चारों तरफ सूरज मुखी के फूल हैं।

और इसकी तो डिजाईन कितना अच्छा है।

यहाँ पर तो राज मिस्त्री का काम चल रहा --